घूमने आए हुए हैं जो हम फोटो में देख सकते हैं।

यहां पर हमें रखे हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर खाना बनाने के लिए सामान रखा हुआ है।

ये हम एक क्र्याना की शॉप नजर आ रही है जहां पर एक अंकल बैठे--

रात का समय है ऐसा लग रहा है।

यहां पर हम देख सकते हैं की यहां कोई पूजा हो रही है।

जो है हम देख सकते हैं और टेबल्स पर सॉस की बॉटल पानी वगैरह की जो बोतलस हैं वो हम देख सकते हैं येलो कलर का भी सोफा --

शेविंग करवा रहा है और ब्लू कलर की चेयर लगी हुई है और एक--

यहां पर इसके बाहर यहां पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और साथ में एक--

एस_बी_आई बैंक के बाहर का दृश्य है।

आसमान बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का नजर आ रहा है।

होटल के बाहर जो है रोशनी नजर आ रही है।

ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ है।